यह फ़ोटो जो आप लोग देख रहे हैं। यह किसी जिम जिम सेंटर का फ़ोटो है जहाँ पे ये लड़का अपनी --